उसके बाद नीचे बाजू में एक दीवाल है जो ईटों की बनी हुई है और वहां पे उसके पीछे झाड़ हैं जो बड़े बड़े झाड़ ऊंचे हैं जो हरे कलर में हैं।

यहां यहां पे कुछ लोग बैठे हुए हैं जो नीम के पत्ते लेकर और जो झंडू के फूल हैं और येलो कलर के फूल हैं लेके--

जो पार्क की तरह दिखाई दे रहा है हरा भरा नज़र आ रहा है।

और यहां पे है ए_सी पीछे हवा के लिए और ऊपर आसमान नीला है।

सामने झाड़ हैं जो शो के लिए लगाया हुआ है लाइन से कतार से झाड़ लगाए हुए हैं।

सब गर्ल्स ऐंड ब्वाएज़ का ऐंड उनके टीचर्स का ड्रेसिंग कलर ब्लैक है।

सोफा सेट है जो वाइट कलर उसपे रेड कलर के पिलो है एक बड़ा सा खिड़की है जो बड़े से परदे लगाए हुए हैं गोल्डन कलर के एक यहां पे जली है।

जो काले कलर की दिखाई दे रही है और हैं यहाँ पे फर्शी फर्शी वाइट कलर की है और झुम्बर है झुम्बर का कलर लाल है।

यहां कंस्ट्रक्शन का काम चालू है जो बिल्डिंग बनाने में का है जो यहां पे--

लाइट है और यहाँ पे नीचे है वर्कर भी काम कर रहे हैं और यहा पे सोफा --

टु व्हीलर को तो नहीं लेकिन फोर व्हीलर को रोजगार जाता है जैसे ट्रक छोटा टम टम छोटा हाथी--

ये एक हॉस्पिटल चरका दिखाएं जो पेशेंट जाकर उनसे पूछ रहे हैं और--

एक सामने हैं जिसका सामने कंप्यूटर रखा हुआ है और यहाँ पे एक--

साइड में झाड़ है और वायरिंग है जो वायरिंग है वो करंट सप्लाई का काम है और यहां पे खिड़की चालू है।

एक आदमी है औओ हथी है जो नकली कान भी सरा रहा है और उसके सूँड पे वो बैठा हुआ है।

यहां पे टेबल है जहां चार कुर्सियां है।